उसपे चेयर रखी हुई है जिसपे --

इसमें मूर्ति सी रखी हुई शंकर जी की दिखाई दे रही --

यहां पर बाँध बना हुआ है। यहां पर पहाड़ है। एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने नीले कलर और सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है और जिस कि दो उँगलियाँ दिखाई दे रही हैं।

रथ है जिसको बोहोत अच्छे से सजाया हुआ है जिसमें घोड़े लगे हुए हैं। फूलों की मालाएं लगी हुई हैं। उसमें झंडा लगा हुआ है पीले कलर का। एक पोस्टर लगा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

पास में पेड़ भी लगे हुए हैं। आसमान दिखाई दे रहा है। ऊपर साइड में ओर भी पेड़ लगे हुए हैं।

ब्रिज बना हुआ है इस ब्रिज के नीचे बहोत बड़ी नदी है जिसमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है ऊपर बादल है और आसमान निकला सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

यहां पे ये एक हाउस बना आ हुआ है।

बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये व्हाइट कलर से --